समुच्य चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बड़ी-बड़ी मशीनो की सुववस्थित क्रियाविधि दिखाई दे रही है इसमें सभी तरह के मशीने दिखाई गई तथा इस जिम में सभी प्रकार के वस्तुओ --

यहाँ पर हर एक प्रकार की प्रतिवर्ती का विकाश --

जो कि संयोजित रूप से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वाहन यह एक निश्चित प्रणाली का सुववस्थित चित्र है जो रूप से दिखाई दे रहा --

यह एक मंदिर की प्रतिमा का स्वरूप है जो सूर्य दिखाई दे रहा है।

ट्रैक पर लगी हुई लाइटिंग भी दिखाई दे रही है तथा अँधेरा होने पर वहाँ पर लाइटिंग जलाकर रेलवे ट्रैक पर निकलने आने-जाने वाले व्यक्तियों को --

यह एक मंदिर के पास की निकलने वाली नदी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है जो एक दिशा से दूसरे दिशा तक पहुंचने वाले व्यक्तियों को --

वास्तु का आदान-प्रदान तथा क्रय-विक्रय करती है जोकि सरकार द्वारा परमिशन से गारंटेड है यह एक सरकारी ----

सामानों के सम्बन्धित दुकान है जो कि परचून से संबंधित हैं किरानो से संबंधित है और तीसरा खद्य पदार्थों से संबंधित हैं जिनकी व्यवस्था कार्य प्रणाली के अनुसार --

यह एक बहुत पुराने किल्ले का गुम्बद दिखाई दे रहा है तथा जिसके पास खड़े हुए दो महिलाएं का सामूहिक चित्र ले रही हैं जो इस व्यवस्था के आधार पर दिखाई देने वाली ये कार्य व्यवस्थिक में है।

चट्टान के इस सीन को देखकर सब लोग खुश हो सकें कि उन लोगों ने वहाँ पर खड़े होके वहाँ का सामूहिक चित्र न लिया।